है कुछ पेड़ बड़े है कुछ छोटे भी है कुछ पो-पो कुछ पेड़ों का पेड़ हरे है कुछ मे थोड़ी-थोड़ी लाल पत्तियां हो चुकी है।

ग्राउंड के चारो तरफ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो की बड़े ही सुन्दर दिखाई दे रहे हैं।

पार्क टाइप का दिख रहा है बहुत सारे पेड़ भी है बादल ब्लू नीला और कुछ व्हाइट दिखाई दे रहा है ।

यहां पर हमें एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जिस पर बहोत सारे दरवाजे दिख रहे हैं।

हैं तथा शाम कुछ खंभे भी दिखाई दे रहें हैं सामने --